गैंडा है। गैंडा एनिमल्स । गैंडा बहोत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे-दिखाई दे रहे हैं। खुला आसमान है नीले कलर का।

चाप दो तीन बाइक दिखाई दे रही है। बहोत सारे लोग इकट्ठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

छोटी-छोटी दुकाने दिख रही हैं और कुछ समान दिख रहा है।

सड़कें है एक आदमी दिख रहा है बड़े -बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

द्रीपंज लोसेलिंग मानस्टेरी है। उसपे बड़े- बड़ा बिल्डिंग घर बनाया हुआ दिखाया गया है।